सामान पीतल कलर के हैं।

इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं कुछ पेड़ सीधी है और कुछ पे कुछ पेड़ टेढ़े हैं।

और दुकान के अंदर रेक भी बनी हुई है रेकों में सामान भी बहुत रखे हुए हैं और ए।

यह एक पार्क का पिक्चर है पार्क में एक लंबी सी सड़क है।

ये एक बस है ये बस एक रोड से रोड किनारे खड़ी है बस के --

जिसमें से बहुत सारे छड़ बिछे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का चट्टान के ऊपर खड़ा है।

इस बिल्डिंग में खिड़की से पीले कलर की रोशनी आ रही है और एक कुत्ता सड़क में खड़े हुए दिखाई दे रहा है।

और कुछ आदमी खड़े हैं और एक आदमी बैठा हुआ है और जमीन के ऊपर बोरी में समान रखा हू--

ये एक क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर है।

ये एक मैकेनिकल दुकान की तस्वीर है।

और इसन और जमीन के ऊपर कुछ गमले रखे हुए हैं।

की दुकान है जिसमें दो स्कूटी खड़े हैं।

ये एक डांस कंपटीशन की तस्वीर है।